इस पिक्चर में हमें घर दिखाई दे रा है।

यहां पर हमें एक वाइट कलर की कार भी दिखाई दे--

पिक्चर में हमें तीन लोग कंप्यूटर पर--

कुछ काम करती हुई दिखाई दे रही हैं।

की डेकोरेशन की जा रही है।

कैपिटल ऑफ महाराष्ट्रा लिखा हुआ नजर आ रहा है।

पड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक जिम दिखाई दे रही है।

खेलती हुईं दिखाई दे रहीं हैं।

बोर्ड पर दफ्तर डिप्युटी कमिश्नर --

जहां पर हमें पिंजरा भी दिखाई --

इस पिक्चर में हमें एक रिसॉर्ट दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें बच्चों के लिए फ्रॉक्स --